इस तस्वीर मे मुझे कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे एक ए_सी दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे कुछ--

यहां मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में मुझे कुछ कोट --

इस तस्वीर में मुझे कुछ पर्दे दि--

वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।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

इस तसवीर में मुझे कुछ जार दिखाई दे रही हैं।